libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम libreoffice base में tables और relationships के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम टेबल में डेटा को जोड़ने के बारे में सीखेंगे
रिलेशलशिप्स को परिभाषित करेंगे और बनायेंगे
पिछले libreoffice base tutorial में हम base बुनियादी database से परिचित हुए तथा सीखा कि database और table कैसे बनायें
tutorial के दौरान हमने उदाहरण के तौर पर library नामक database भी बनाया तथा books table भी बनाया
इस tutorial में हम library database के साथ शुरू करेंगे और सीखेंगे कि table में data कैसे जोड़ें
इसके लिए libreoffice base program शुरू करें
इसके लिए हम screen की बायीं ओर सबसे नीचे start button पर click करेंगे
all programs पर click करें फिर libreoffice suite पर click करें और libreoffice base पर click करें
क्योंकि हमने पिछले tutorial में पहले से ही library database बनाया हुआ है इस समय हमें केवल इसे open करने की आवश्यकता होगी
यह करने के लिए open an existing database file option पर click करें
recently used ड्रापडाउन box में हमारा library database स्पष्ट होना चाहिए
अतः अब finish button पर click करें
यदि open इसे नही देखा है हम windows directory को browse करने के लिए open button पर click कर सकते हैं जहाँ library database सेव है
मिल जाने पर filename पर click करें और open button पर click करें
अब यदि libreoffice base program पहले से ही open है तो हम यहाँ से library database open कर सकते हैं
सबसे open file menu पर क्लिक करके और फिर open पर क्लिक करके
हम windows directory browse करेंगे जहाँ library database फाइल सेव है
file library odb पर click करें और सबसे नीचे open button पर click करें
अब हम library database में हैं
left panel पर database सूची में tables icon पर click करें
ध्यान दें कि right panel पर tables सूची में books table दिखाई देता है
अब books table पर right click करें
ध्यान दें यहाँ से आप विविध options चुन सकते हैं
add इस table में data जोड़ने के लिए open पर click करें
वैकल्पिक रूप से हम इसे open करने के लिए table name पर double click भी कर सकते हैं
books – library – libreoffice base: table data view नामक शीर्षक के साथ एक नया window opens होता है
अब हम सीधे प्रत्येक cell में values टाइप करके books table में data एंटर करना शुरू कर सकते हैं
ध्यान दें bookid कॉलम्स autofield है
अर्थात base data की प्रत्येक row के लिए आरोही numbers स्वतः ही आवंटित करेगा जिसे हम प्रविष्ट करते हैं
अब जैसा कि screen पर दिखाया गया है rowदरrow cells में data input करें
अतः यहाँ हमारे पास हमारे table books में सैम्पल data की 5 rows हैं
सबसे ऊपर file menu पर क्लिक करके और फिर close चुनकर window बंद करें
यहाँ आपके लिए नियतकार्य है
एक members table बनायें जो प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी संचित करेगा उदाहरणस्वरूप सदस्य का name और phone number
निम्न 3 fields को सम्मिलित करें
member id field typeinteger के साथ और इसे primary की बनायें
name fieldtype text के साथ
phone fieldtype text के साथ
ठीक है जब आप कर चुके होते हैं तो members table इस तरह दिखाई देगा
इस window को बंद कर दें
add members table में 4 सैम्पल members को जोड़ें जैसा अभी screen में दिखाया गया है
अभी जिस तरह से हमने books table के लिए किया
हो जाने पर इस window को बंद कर दें
अब वापस मुख्य window पर जाएँ और फिर से tables icon पर click करें
और तीसरा table books issued बनाएँ
जब बन जाय books issued table में निम्नलिखित fields होंगे
issue id field type integer जो कि प्राइमरी की होगी
book id field type integer
member id field type integer
issue date field type date
return date field type date
actual return date field type date
और checked in field type yes/no boolean
ठीक है हमने books issued table बना दिया है
और add इसमें निम्न सैम्पल data जोड़ें जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं
हालांकि यह अभी पूर्ण अर्थ नहीं बना सकता हम जल्दी ही समझ जायेंगे कि क्या हो रहा है
अब हमारे पास सैम्पल data के साथ हमारे library database में तीन tables भी हैं
अब database में relationships परिभाषित करने के बारे में सीखते हैं
अतः हमने तीन भिन्न जानकारी के sets को संचित करने के लिए तीन tables बनायें हैं
books members और issue of books to members
अब हम इन तीन tables में प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक member और प्रत्येक जारी पुस्तक की विशिष्ट पहचान के लिए columns सेटअप करेंगे
वे primary keys हैं
primary की के विविध लाभों में से एक यह है कि यह tables के मध्य relationships स्थापित करती है
लेकिन हमें relationships की आवश्यकता क्यों है
books issued table पर देखें यहाँ हमें book id और member id fields दिखते हैं
वे books issued table में कोई भी value रख सकते हैं
लेकिन उन्हें समान values के अनुरूप रखने की आवश्यकता होगी जैसे कि क्रमानुसार books और members tables में है
अतः यदि books table में पुस्तक macbeth की book id 3 है
तो books issued table की book id में 3 का उपयोग करके हम अभी भी उसी पुस्तक का उल्लेख करेंगे
अतः इन दो tables को स्पष्ट रूप से संयोजित करने के लिए हमें अभी भी उन्हें किसी प्रकार से link करने की आवश्यकता होगी
और उदाहरणस्वरूप आप यह कैसे प्रमाणित करेंगे कि macbeth ravi kumar को 2nd june 2011 को जारी की गया थी
या आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तक केवल library के सदस्य को ही जारी की गई है किसी अन्य को नहीं
यह सब relationships सेटअप करके किया जा सकता है जोकि data को interlink करने में मदद करता है
हमें सही fields को लिंक करके books table और members table से values का उपयोग करने के लिए base को force करने की आवश्यकता होगी
देखते हैं कि कैसे
libreoffice base मुख्य window में tools पर click करें और फिर relationships पर click करें
यह एक छोटा popअप window opens करता है
यहाँ हम सबसे ऊपर का table चुनेंगे और add button पर click करेंगे और अन्य दो tables के लिए पुनः करेंगे
popअप window को बंद करें
अब हम line में तीन tables books books issued और members देखते हैं
क्लिक करके ड्रैग करके और ड्रॉप करके tables में अधिक space लायें
अब books table में book id पर click करें और इसे books issued table में book id पर drag और drop करें
ध्यान दें इन दो field names को एक line संयोजित कर रही है अतः यहाँ हमने relationship set कर दिया है
memberid के लिए इसे पुनः करें
members table में member id पर click करें और books issued table में इसे drag और drop करें
आप देख सकते हैं कि हमने अभी दो relationships बनाये
और यह है कि हम relationships कैसे स्थापित कर सकते हैं
और इसलिए interlink महत्वपूर्ण data relational database में विविध tables में संचित हुआ है
अब हम libreoffice में tables और relationships पर इस tutorial की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि टेबल में डेटा कैसे जोड़ें रिलेशनशिप्स को परिभाषित करना और बनाना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
यह project
इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है